इस फोटो में एक स्कूल को दिखाया गया है जिसमें बच्चे जमीन पर बैठकर योगा कर रहे हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है पीछे टी_वी लगी हुई है।

नीचे बहुत सारी कचड़ा पड़ा हुआ है।

भैंस के गले में हरे रंग की रस्सी बंधी हुई है उसके लिए खाना रखा है पीछे बहुत सारा भूसा रखा हुआ है।

कुछ घर हैं और लाल कलर के डब्बे रखे हुए हैं।

उन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं इस फोटो में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

इस फोटो में एक नदी को दिखाया गया है जिसके ऊपर पुल बना हुआ है उस पुल से कुछ लोग इस साइड आ रहे हैं कुछ लोग उस साइड जा रहे हैं।

इस फोटो में दिखाया जा रहा है एक घर बन रहा है।

कुछ मिस्त्री हैं एक काले रंग की कुर्सी रखी हुई है ईंटों से दीवार बनाई जा रही है।

बहुत सारे प्रकार के फूल हैं कुछ लोग फूलों को बेच रहे हैं और कुछ लोग फूलों को खरीद रहे हैं।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

ऊपर छत पर लाइटें लगी हुई हैं जो सफेद रंग की रोशनी कर रही हैं।

इस फोटो में एक ट्रेन स्टेशन को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी पटरियां जा रही हैं एक ट्रेन आ रही है जो हरे रंग की है।

दो सफेद रंग की स्कूटी खड़ी हुई है एक काले रंग की स्कूटी खड़ी हुई है।

और हरे रंग के पीछे नीले रंग का टेंट लगा हुआ है एक सर माइक से कुछ बोल रहे हैं।

इस फोटो में किसी रेस्टोरेंट को दिखाया गया है इसमें बहुत सारी टेबलें पड़ी हुई हैं उन पर लाल रंग का कपड़ा है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

पीले रंग की तकियां रखी गई है एक चद्दर रखी गई है।

कुछ केले रखे हुए हैं केले के ऊपर नीली पन्नियां रखी हुई है।